इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि यहां पर जो एक व्यक्ति है वह झंडा रोहण करता हुआ दिखाई दे रहा है।

नजर आ रही है ओर नीव के पास में एक व्यक्ति भी खड़ा हुवा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में दिखाय दे रहा है की वाह क्या लुक है इस बन्दे का और इसने नाई जेसे कपडे पहन रखे है।